तस्वीर में एक प घर दिखाई दे रहा है जो ईंटों से बना है।

सीमेंट का बना हुआ हाथी दिखाई दे रहा है।

तथा एक आदमी कुर्ता और धोती पहने वहां पर कुछ कर रहा है।

एक स्टीकर चिपका हुआ है जिस पर दी हाउस ट्वेन्टी वन लिखा हुआ है।

एवं ऊपर में बहोत सारी खिड़कियां भी है।

तस्वीर में एक बड़ी सी बिल्डिंग नजर आ रही है।

इसके नीचे बड़ी सी एक नीले रंग की ग्रील कील लगी हुई है।

आकाश बिल्कुल काला दिखाई दे रहा है।

सजावट गेंदे के फूलों से की गई है।

छोटे छोटे गमलों मे भी फूल लगाए गए हैं।

एक पौधों एक पौधे को सुन्दर आकार में डिजाइन दिया गया है।

ये दोनों तजिया को उठा रहे हैं।

ऊपर का आकाश बिल्कुल नीला दिखाई दे रहा है।

तथा इस बिल्डिंग को पिलर के सहारे खड़ा किया गया है।

यहां अगल बगल बहोत सारे बाइक्स लगाए गए हैं।

सामने की ओर से दो आदमी एक दूसरे से बात करते नज़र आ रहे हैं।

ऊपर का सीलिंग में बहुत सारे लाइट्स लगे हुए हैं।

यहां पे नीचे हरे हरे घास जमे हुए है।

एक भी दिखाई दे रहा है।

तीन चार परांठे को सजा कर रखा गया है।

यह देखने में बहुत ही लजीज लग रहा है।

तथा नदी का पानी बिल्कुल स्थिर है।

अंदर की दीवार ग्लास से बनाई गई हैं।

एक बड़े बड़े अक्षरों में नेक्सा लिखा हुआ हैं।

सामने कि ओर बाटा कंपनी का लोगो भी है।

एक दुकानदार है जिसने शर्ट पहन रखी है।

उसके सामने बहुत बड़ा सा कंपाउंड है।

इसके अगल बगल दो बड़े घुमावदार लाइट्स लगे हैं।

ओ उनके सामने एक आदमी खड़ा है।

जिसके जेब के पास इंची टेप है।

तथा बाईं ओर दो बड़े बड़े बोल्डर जैसे पत्थर रखे हुए हैं।

यह तस्वीर किसी मॉल की है।

तथा नीचे की ओर मार्बल्स लगे हुए हैं।